दो लेडीज बैठी हुई हैं एक औरत जो है नीचे बैठी हुई है कोई चीज उठा रही है।

और यहां पे एक लड़की है जो जा रही है और कुछ लड़के हैं जिन्होंने बैग भी पहना--

और गुलदान वगैरह भी है और इसमें दो लोग भी मौजूद हैं एक औरत है एक मर्द है।

यह एक स्टोर है जो के बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसकी डेकरेट डेकोरटेड बहुत अच्छी सी की हुई है।

ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जो की एक टाउन के तरह बनी हुई है इसमें बहुत सारे --

एक दो और भी गाड़ियां हैं जहाँ गाड़ियों का स्टाफ किया है।

यहां पे एक नर्सरी है जो के यहां पे कोई चीजें उगाई गई हैं जो के यहां पे एक मर्द --

यहाँ पे एक सब्जा रंग का प्लॉट है।

जिसके ऊपर मुख्तलिफ फ्रूट भी हैं जिसमें अ सेब भी हैं तरबूज भी हैं आम भी हैं लेमू भी हैं।

केबी है और चादर है इसके ऊपर और अ एक चादर दो चादरें भी पड़ी हुई हैं।

ये एक होस्टल है तो हॉस्टल के बाद --

कुछ लोग मौजूद हैं चार पाँच जो की यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है और यहां पे बाहर एक पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी हुई --

जो कि वो जमीन को कोई चीज उसके अंदर डाल रहा है।

इसमें हर किस्म की गाड़ी में जो है और ये बहुत खूबसूरत ही गाड़ियां हैं।

अ रेस्टोरेंट जो की बहुत खूबसूरत है यहां पे बहुत से लोग बहुत दूर दूर के लोग यहां पे आते हैं।

ये एक स्टोर है बहुत बड़ा जो के खूबसूरत है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूलों के सेहरे भी हैं यहां पे कुछ लोग --